पीछे दीवार पर बहुत सारे फोटो रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति हैं।

ए कट्टा रखा हुआ है।

एक लाल कलर की शर्ट में आदमी खड़ा हुआ है।

एक टेंट लगा हुआ है।

एक पोस्टर पर पल्स जिम लिखा हुआ है।

यह एक हॉस्पिटल का फोटो है।

एक अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है।

मे बहुत सारी लाइटे लगी हुई है।

एक नीले रंग के बोर्ड पर बिलिंग लिखा हुआ है।

बहुत सारे हरे पत्ते भी रख रखे हैं।

सड़क पर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

तीन व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

बहुत बड़ी खुदी हुई जमीन भी है।

बहुत सारे व्यक्ति भी हैं।

दो ऊपर टंगी हुई हैं।

नाव है नाव पर सात व्यक्ति बैठे हुए हैं।

बहुत सारी मशीने स्टील की बनी हुई हैं।

फूलों की बहुत सारी माला हैं।

एक बोड पर व्यक्ति ने हाथ उठाया हुआ है।

एक सी_पी_यू का ढक्कन रखा हुआ है।

इस फोटो में बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं।

इस फोटो में पांच व्यक्ति हैं।

बहोत सारी साइकिले खड़ी हुई है।

एक व्यक्ति ने सफेद रंग की शर्ट पहरी हुई है।

मैदान पर एक पाइप पड़ा हुआ है।

इस फोटो में बहुत सारे बाथरूम है बाथरूम नीले कलर और सफेद रंग के हैं।

एक लाल और हरे कपड़ों में एक महिला है।

संतरी रंग का पर्दा लगा हुआ है।

उस पर व्यक्ति ने हाथ रखा हुआ है।

एक लोहे का गेट लगा हुआ है।